यहाँ पे हम एक फैक्ट्री देख पा रहे है इस फैक्ट्री के आसपास हम बहोत सारे पेड़-पौधे देख पा रहे है कुछ बस कार --

हम बहोत सारे छोटे बड़े हरे रंग के पेड़-पौधे देख पा रहे है कुछ इलेक्ट्रिक पोल और तार भी देख पा रहे है ।

जिनके आसपास हम कुछ झण्डे देख सकते है और कुछ पेड़ पौधे भी हम यहाँ पे देख पा रहे है।